और एक लाइट लगी हुई है बहुत सारे लोग काम कर रहे है गिनती के छह लोग है यहाँ पर और मशीने रखी हुई है।

रहा है ये स्वच्छ भारत अभियान का मिशन चल रहा है | ये एक बिल्डिंग है बहुत सारे पेड़ है लंबे लंबे --

उसके गले में टाई लगी हुई है | एक स्कार्फ ओढा हुआ है छोटी छोटी उसकी मुछे हैं।

अंकल काले कलर का जेकेट पहनें हैं र-रेड कलर की शर्ट पहने हैं हाँथ में धागा बांधे हैं ।

डेकोरेशन हो रखी है टेंट लगा हुआ है।

लोहे का कुछ समान एक अ रस्सी है जिसको वो खींच रहा है वो चश्मा पहने हुए हैं और जीन्स पहने हुए है | सामने नदी है और एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए है ऐसा लग प्रतीत हो रहा है कि इन लोगों की मीटिंग चल रही है।